दरगाह है और डेकोरेट है वहां पर कुछ पब्लिक है और कुछ लोग पिक क्लीक करवा रहे है वहा पर जो दरगाह है वहा पर उसके पास--

आ कुछ आसमान दिख रहे है बहुत सारे पेड़ है घर बने हुए है बहुत सारे लोग खड़े हुए है।

एक कुछ आ ग्रीन-ग्रीन सा नीचे है कैंडल जल रही है अगरबत्ती जल रही है मंदिर सा है वहा पर--

एक रूम हैउसमे बच्चे तीन लड़कियां है जो डांस कर रही है ब्लैक कॉलर का पर्दा लगा हुआ है और वो लोग डांस कर रही है।

एक मंदिर है जिसमे काफ़ी सारी फ्लावर्स है और धरती दिख रही है।

पेड़ है बहुत सारे और जो लेबर है वह खड़ी हुई है काम कर रही है सीमेंट हैउसकीछत बन रही है सीमेंट है बहुत सारी।